यह कोई सब्जी मार्केट लग रहा है यहाँ पे हम देख सकते है सब्जी मार्केट के सड़क के बीचों-बीच ये दुकान को--